बिल्डिंग के पास मुझे बस स्टॉप दिख रहा है।

बस स्टॉप में मुझे तीन बस खड़ी दिख रही है।

टेबल के ऊपर एक डॉगी बैठा दिख रहा है।

इसमे मुझे टेबल के नीचे कार्टून बॉक्स रखें दिख रहे हैं।

इसमें मुझे झरना जैसा दिख रहा है।

घर के पास मुझे बड़ा खैत खेत दिख रहा है।

इसमें मुझे लाल रंग का डाक घर दिख रहा है।

इसमें मुझे कटनी जंक्शन दिख रहा हैं।